और ये पुल बहुत ही अच्छा है यहां से गाड़ी भी बराबर गाड़ी भी जाता है आता है।

बहुत सारे मिरी मिस्त्री लेबर मजदूर आए हुए हैं बहुत सारे इंजीनियर भी आए हुए हैं।

और सेट्रिंग लगने के बाद ऊपर से ढलैया होगा।

एरोप्लेन भी इसे कहा जाता है।

जो इंडिगो का जहाज है और बहुत बड़ा जहाज है ये।

की ऐपल मिन्स सेब और ये गरीब आदमी है जो ठेला पे दुकान खोल के --

और ये सब डीज़ल पे चलता है टैम्पू और बस --

और मंदिर में सभी लोग पूजा करने आते हैं ठकुरबाड़ी में पूजा करने आते हैं सभी।

जिससे घुटनो में उठा हुआ है घुटना और घुटने पे बैंडेज पट्टी भी किया हुआ है।